और कुछ लाइट दिखाई दे रही है।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

जिसमे मुझे दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

और एक मशीन भी दिखाई दे रही है।

यह एक रसोई है जिसमें मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है जो की छोटा सा है।

खिड़कियां है और नीले रंग की लाइट भी है और पीले रंग की भी और एक घड़ी है।

बड़े वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी के हाथ में कैमरा भी है।

भी दिखाई दे रहे हैं और लाइट भी दिखाई दे रही है।

एक बहुत ही सुंदर खेत है।

एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रही है।

योगा करने का पार्क है जिसमें मुझे कुछ औरत दिखाई दे रही हैं और आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है जिस पर लाइटें लग रही है।

कुछ खाने का सामान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक नाइट की शादी है जिसमें मुझे कुछ औरत दिखाई दे रही है और आदमी भी दिखाई दे रहे है और कुछ जाकत दिखाई दे रही हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और लीची भी दिखाई दे रही है।

घर भी दिखाई दे रहे है पीछे।

इसमे मुझे बहुत सारे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक बार दिखाई दे रही है।

दारू की बोतल दिखाई दे रही है जोकि डिब्बे में पैक है और कोई खुली बोतल धरी है।

हरे रंग का कुछ दिखाई दे रहा है।

यह एक घर है जिसमें मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और एक बोर्ड लग रहा है।

नीचे वाइट कलर की टाइल लग रही है और दो बोतल दिखाई दे रही है।

कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है।

लाइटें भी दिखाई दे रही हैं और कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कुर्सी की दुकान है।

बहुत सॉरी अलग अलग रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है।

कुर्सियों पे एक पन्नी चढ़ रही है।

और एक साइकिले भी दिखाई दे रही है।